बड़ी रेलिंग दी गई है काफी बड़े बड़े कांच हैं यहां पे छोटे छोटे--

एक दो कुछ पेड़ों के बीच में वोट लगी हुई है वोट के दो तीन बोर्ड लगी हुई है।

अंदर कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा है गेट के अंदर रूम के अंदर खड़ा है।

सामने एक दुकान है दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है बोर्ड में लिखा है मोगली जंक्शन --

गली जंक्शन ऊपर मोबाइल नंबर दिया गया है नीचे बिरयानी तंदूर गली रोड इंडियन चीज एक खाने का शॉप है।

यहां सिस्टर खड़ी हैं व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में पीछे गोल से रेडिकुलम है।

ये एक रास्ता है काफी सारी गाड़ियां चल रही काफी लोग खड़े हैं साइड में काफी दुकाने हैं।

एक स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल के चारों ओर बाउंड्री की गई है बाउंड्री के ऊपर रेलिंग लगी हुई है।

नीचे दो तीन दुकाने है जिसका शटर बंद है बाहर दो गाड़ियां खड़ी है कलर की--

एक गेट है गेट के बाहर एक सामने मकान है मकान मकान का बड़ा--